जो हमारे घर में ले जा के यूज करके हम खाना पका के खाते हैं ।

इस इमेज में देख सकते है हमारे सामने मेडिकल स्टोर है और जोकि यहाँ पे हर एक मेडिसीन मिलती है| हर एक डिसीस की दवा मिलती हैं यहाँ पे |